यहां किनारे जालियां लगी हुई हैं। पीछे काफी सारे घर नजर आ रहे हैं। किनारे पर बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। यहां जमीन पर अ लाइने खींची गई हुई हैं।

सामने एक बड़ा सा पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। जिसके चारों तरफ पिलर्स हैं। पिलर्स पर काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं। यहां अंदर एक ट्रक है। कुछ बाइकस हैं।

बीच में दो बड़ी-बड़ी इमारते नजर आ रही हैं और सामने दो छोटी-छोटी इमारते हैं। पीछे दीवार नजर आ रहा है जिसपे फेस कलर का कलर किया गया है।

सामने छोटा सा नदी नजर आ रहा है जिसमें से पानी बह रहा है। चारों तरफ हरी-हरी वादियां नजर आ रही हैं। पीछे बड़ी सी पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं जिनपर --